और यहां पे बहोत अच्छा डेकोरेशन करा हुआ है टेबल चेयर्स् अच्छे हैं और --

इसमें एक सेल्स पर्सन है कुछ कस्टमर भी बैठे हुए हैं सेल्स पर्सन को --

ये एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर अलग अलग प्रकार के वुलन के कपड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पे --

एक पर्यटक स्थल दिखाई दे रहा है। शायद बगीचेनुमा कोई पर्यटक स्थल है।

और बहोत ही अच्छी तरह से वो योगा--

और अभी लगता है की क्लोजिंग का है या दिन ऐसा वक्त है जहां पे अभी कोई भी इसलिए कस्टमर नहीं है।

बहोत सारे पोस्ट ऑफिस में बहोत सारे काम होते हैं सरकारी काम पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने चाहिए।

और पंडित जी पूजा कर रहे हैं और यहां की सजावट बहोत अच्छी है हमें नियमित रूप से पूजा करने जाना चाहिए मंदिर में।

ये कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पे अलग अलग प्रकार के वूलन के कपड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पे--

ये एक नर्सरी का नजारा दिख रहा है इसमें अलग अलग तरह के पौधे रखे गए है और कई तरह के कंपार्टमेंट इसमें दिखाई दे रहे है।